कंपनी का फोटो बहोत अच्छा लग रहा तो वो कित्ता अच्छा लग रहा फोटो हरे हरे पेड़ू हो लगे कित्ता अच्छा बॉर्डर लग रहा कंपनी बहोत अच्छी हैइ ।

सब लोग यहाँ डाक भेजत अपने आधारकार्ड बनते डाकखाने में देखो कितना अच्छा सब कुछ लग रहा बहुत अच्छा यहाँ --

पोट्टर लगे देखो पहले बहुत अच्छा लग रहा यहाँ देखो पहले कित्ती चीज़ें यहीं --